आदमी दिखाई दे रहे हैं जो कि वर्क अपना घर का काम कर रहे हैं| कपड़े बुन रहे हैं। मशीन में बहोत सारे अ औजार लगे हुए हैं।

व्हाइट येलो पिंक कलर की शीट दिखाई दे रही है| बच्चे ड्रेसेस पहने हुए हैं एक्टिविटीज को कर रहे हैं| कुछ फालतू सामान जो है वो नीचे की ओर बिखरा पड़ा हुआ है| ह और बेंचेस लगी हुई है यहाँ पर--